यहाँ पर आप लोग देख सकते है सामने की तरफ ये एक जिम बना हुआ है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है सामने की तरफ ये एक बहुत बड़ा जिम बना हुआ है इसमे यहाँ पर लाइन से--

यहा पर आप लोग देख सकते है। सामने की तरफ ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ये एक होटल है। जिसका नाम वैष्णवी तेल टेरस गार्डन है। फॅमिली रैस्टौरंट भी है ये।

यहा पर आप लोग देख सकते है ये एक पहाड़ी इलाखा है जहा पर ये एक रोड बना हुआ है यहा से हमे काफी सारी गाड़ीया जाती हुई दिखाई दे रही है।